और मैदान दिख रहा है। जहां पर गिट्टी डाली हुई है। चबूतरा सा बना है। ऑरेंज और नीला कलर का पोताई है।

खड़ा हुआ है और एक पीछे दिख रहा है उसके--

और गुफा सा बना है। उस पर बाउंड्री पर भालू चढ़ा है।

और ईस्टॅन्ड रखे हुए हैं। काफी सारे ईस्टॅन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स --

यहां पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

अ बाहर से लाइट लाइट सजा हुआ है जो बहोत ही प्यारा लग रहा पेड़ भी दिख रहा है और लाइट भी लगी हुई है।

यहां एक दोस्त दुकान है जहां पास चार से पांच बुजुर्ग--

फुल लगा हुवा है और बिल्डिंग बहोत ही प्यारी हैं।

होती है और यहां बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं और गुब्बारे से सजा हुआ है छोटी सी दुकान है।

क्लास लगती है जहां पास अले अलग बॉक्स बने हुए हैं।

यहां पास एक बड़ा सा रोड है जो रोड के किनारे--

और यहां बिजली का खम्मा दिख रहा है और लाइट भी दिख ही रही है।

यहां पास एक पुराना सा महल बना हुआ है जो टूटा फुट गया है।

यहां पास एक जंगल इलाके इलाका है।

और यहां एक पेड़ भी लगा हुआ है जो बहोत ही--

यहां पास एक बड़ा सा तालाब है।

यहां पास एक बड़ा सा मैदान सजा हुआ है जो शादी का डेकोरेट बना हुआ है यहां पास--

काफी सारी दवाइयां रखी हुई है दुकान के अंदर और बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का।